नगर पालिका निगम बिलासपुर लिखा हुआ है पूरे वार्ड कार्यालय --

मू खोले हुए सलबटटी जैसी बादल दिख रही हैं और एक गोल राउन्ड मे--

मकान बन रहा है बीच में कॉलोनी है आसपास बाउंड्री दिख रही है बीच में मैदान में मकान बन रहा--

चेयर लगी हुई है तीन-चार काँच लगे हुई है सामने एक केबीन बना हुआ है दिख रहा हैं ।

सुंदर सा डेकोरेशन हो रहा है बाहर मेन गेट पर यही--

ये नदी है बड़ी सी नदी दिखाई दे रही है बहुत बड़ी--

लगा रखा हुआ है ये जाम-- जामफ़ल रखा हुआ है डंडी से पकड़े हुए है ये--

पेड़ दिख रहा है दूरी पर और एक छोटे-छोटे पौधे देख रहै हैं जाम फल दिख रहा है।

टॉकीज का हॉल जैसा दिखाई दे रहा है और लाइट लगी हुई ऐसी लगी हुई दिख रही है सामने दीवार--

और छोटी सी दुकान दिख रही है रोड के सामने फ़रीदाबादी महा अलमीरा लिखा हुआ है इसके ऊपर--